एक जे_पी ई -स्कूटर और इ-रिक्शा है यहाँ पर एह किसी मेले में एह इ-रिक्शाओ का बाजार लगाया गया है।

एच.डी.एफ.सी. बैंक का एक ए.टी.एम. है जिस ए.टी.एम. में लोगों को पैसे निकालने की कतार लगी हुई है।

इसके मालिक हैं संजय चंद्रवंशी यहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तके अवेलेबल हैं।